और ये चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें बाउंड्रीज लगल नजर आ रही है और इसमें --

सामने की ओर देख रहा है। इसमें केला का पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है और --

यहाँ पे एक फ्लैट दिखाई दे रहा है और यह फ्लैट बोहोत बड़ा है इसमें भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और तीन-चार --

एक घर है जिसमें एक सर्वेंट है जो की झाड़ू लगाने का काम कर रहा है रोड पर बहोत सारे पत्तियां गिरी हुई है उस पे झाड़ू लगा रहे --

और छोटे-छोटे समाने भी रखे हुए हैं और भी दिखाई दे रही है।